के सामने पेमेंट इ का पेमेंट लगा हुआ एक आदमी है ए.टी.एम. से बाहर निकाल --

एक आदमी उस पानी में से अपनी ऊपर से पॉलिथईन ओढ़ कर जा रहा है उसके पीछे एक लाल कलर का बिल्डिंग है एक कार उसी पानी में चल रहा है|

एक खेत दिया हुआ है जिसके सामने एक नदी है जो थोड़ा सुख चुका है।

एक जेनेरल स्टोर का दुकान है जिसमे हॉर्लिक्स का पैकेट रखा हुआ है बहुत सारा किराना का समान है आटा रखा हुआ है केचप रखा हुआ है।

साइड मे एक ए सेटिंग पॉइंट है।

एक किसी वाइट घर का फोटो दिया हुआ है जिसमें किसी शादी का घर लग रहा है जिस पे हरा कलर का --

उस टावर पे बहुत सारे सिंगनल केब लगे हुए हैं साइड में एक रूम भी बना हुआ है नीचे कपड़े एक रस्सी पर कपड़ा सब भी टाँगा हुआ है सूखने के लिए उसके पीछे एक व्हाइट कलर का टंकी --